इस चित्र मे ए टी म लिखा हुवा दिख रहा हे बाहर आदमी खड़े हुवे हे दिख रहे हे दोनों तरफ से सिडिया जाती हुई हे दिख रही है।